लाल रंग का पन्ना पहना हुआ है और गोल्डन कलर की कोट पहना हुआ है।

आगे का शटर ब्लू कलर का है। उसके आगे एक वॉल लगा हुआ है उसपे कुछ लिखा हुआ है। ऊपर वाले वॉल पे एक पोस्टर लगा हुआ है। उसकी वॉल की छत दिखाई दे रही है। छत --

पर लाइट लगी हुई है | भगवान बगल मे बैठे हुए व्यक्ति ने व्हाइट कलर का बनियान और पिंक कलर की धोती --

इस वीडियो में बना हुआ एक स्तंभ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ लिखा हुआ कुछ नाम दिखाई दे रहा है। इसकी विंडो दिखाई दे रही --

इस वीडियो पर एक रोड दिखाई दे रही है। रोड के ऊपर खड़े दिखाई दे रहें हैं आदमी दिखाई दे रहें हैं। पीछे की तरफ बनी हुई शॉप दिखाई दे रही है।

इस वीडियो में एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल के बीच में बैठे हुए लोग दिखाई दे रहें हैं।

लक्ष्मी नारायण विद्यालय भगवानपुर लिखा हुआ है पीछे गेट खुला हुआ है पीछे के पेड़-पौधे दिखाई --

पीछे की खिड़कियाँ दिखाई दे रही है विंडो दिखाई दे रहें हैं वॉल दिखाई दे रहें हैं। ऊपर की छत पर जली हुई लाइटें दिखा रहीं हैं। एक चेयर दिखाई दे रही है उस जिसपे एक लड़की बैठी हुई है।

जिसने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और अपनी पिक्चर खींच री --

के ऊपर दो औरतें बैठी है। एक तरफ एक आदमी बैठा है। एक औरत माइक में बोल रही है एक ने हाथ में हारमोनियम पर रखा है।

आगे का फ्लोर दिखाई दे रहा है। पीछे की बनी बोर्ड दिवारे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है। आगे की तरफ दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस वीडियो में एक शॉप दिखाई दे रही है। शॉप के आगे हुए बना हुआ काउंटर दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का बना हुआ है।

एक येलो कलर का पीछे ब्लू कलर का है एक क्रीम कलर का अलग-अलग तरीके के मकान बने हुए है।

स्टेशन की लाइनें दिखाई दे रही है | एक ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है | पीछे के लोहे के ग्रिल दिखाई दे रहे हैं ।

इस वीडियो में बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में ईटों की बनी दिवारें दिखाई दे रहीं हैं। पीछे की तरफ लगे हुए बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं।

इस वीडियो में एक रोड दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर खड़ी हुई बाइक दिखा रही है। पीछे की तरफ एक शॉप दिखाई दे रही है। शॉप के आगे वो नवा आंगन दिखाई दे रहा है।

शॉप दिखाई दे री हैं जो दो शॉप हैं सड़क के ऊपर खड़े हुए वीइकल दिखाई दे रहे हें दो-तीन बाइके खड़ी हैं।

ऊपर से आसमान का पड़ता हुआ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है जो पानी के बीच में आ रहा है ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।